आ बहोत सारे बॉल्ब पे बहोत सारे लाइटे लगाए गई है बहोत से लोग आना-जाना कर रहे है बहोत से लोग बाहर की ओर जा रहे है बहोत से लोग अंदर की ओर आ --

अ बहोत से लोग जो रेलिंग के पास खड़े हो के नीचे की ओर देख रहे हैं बहोत सारी लाइटे लगी हुई है।

ये एक दुकान है मॉल में कोने पे सीढ़ी के पास वहाँ पे बहोत सारे रैक बना के बहोत सारे भगवानों की फोटो रखी गई है छोटे-छोटे कथक कली की बहो --

ये एक कैफे है जहाँ पे जिसका नाम है बेस्ट कैफे है बहोत ज्यादा डिजाइंस लगे हुए हैं एक बड़ा सा टूल लगा उसपे दो आदमी बैठे हुए हैं।

एक कॉरिडोर है जहाँ पे एक आदमी है एक लेडीज है जो अपना बैग दूसरे आदमी को चेक करवा रही है।

ये एक जगह है जहाँ पर बहोत ज्यादा भीड़-भार लगा हुआ है बहोत सारे रेलिंग लगे है।

बहुत से लोग आपस में बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग अपना भीड़ इकट्ठा किया हुआ बहुत ज्यादा भीड़--

एक दो आदमी लाइन लगा के खड़े हैं लाइट लगी हुई है बाइक खड़ी हुई है दो तीन आदमी--

रोड है जिसपे बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं बहुत सारे लड़के दो-तीन लड़के आपस में रेस कर रहे हैं।

एक दुकान है जिसका नाम प्रताप कम्युनिकेशन --

यह एक लैब है जहाँ पर बहुत सारी मशीनें रखी गई है और उन्हें लाइन से कनेक्टेड किया गया है सर्च करने वाले सब माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं बहुत सारे--

ये एक घर का क्वीडिडोर है जहां पे बहोत सारे बहोत सारे रखे गए--

यहाँ पे बीच में एक तालाब है जो साइड साइड में पत्थर-वत्थर पड़े हुए है बहुत से गाय भैंस सब चर रही है बहुत सारे तारे कनेक्टेड है बहुत सारे पेड़-पो --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

एक शॉप है दवाई शॉप है जहां दवाई की तो आपको--

और नीचे में बहोत सारे तार बिछे हुए हैं बहोत सारे लोहे के पार्ट्स बिखरे हुए हैं।

जिसके मे फर्नीचर्स के बहोत सारे सामान मिलते है गेट मिलते हैं बहोत सारे टेबल कुर्सी रखी हुई हैं बहोत सारे लैट्रिन बाथरूम के छो--

ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल का शॉप है यहां पे बहुत सारी--

बॉर्डर बिछा के पाइप लगाया जायगा हैं उसके अच्छे से बांधा गया है और लोग आना जाना कर रहे बहोत सारी साइड में --

ए_टी_एम है जिसका नाम है एस_बी_आई ए_टी_एम एक आदमी पैसे निकाल के बाहर जाके के पैसे गिन रहा और एक आदमी अंदर की ओर गया--

यहाँ पे पैसा निकालने का ए_टी_एम रखा गया है उसमें सी_सी_टी_वी कैमरा लगाया गया है ए--